और इहा मुझे बहुत सारे व्यक्ति नायों में बैठे हुए दिखाई दे रही है और साल के लिए--

ठेले पर कुछ लोग सामा उह कुछ सामान खरीद ते हुए नजर आ रहे हे और कुछ खाते हुए नजर आ रहे हे फुलकी और इहा कुछ ब्यक्ति चलते हुए नजर आ रहे हे और बाहन दिखाई दे रहे हे पड़को पर पेड़ पौधे लगे हुइ दिखाई दे रहे हे मकान बनी हुई--

एक स्टोर दिखाई दे रहा हैयहाँ किराना का और यहाँ बहुत सारे किराने दुकान में बहुत सारे समान दिखाई दे रहे हैं लटके हुए दिखाई दे एण्ड --

और मिट्टी नजर आ रही है पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं लगाई हुई दिखाई दे रही है।